इस फोटो में हमें एक बेड दिखाई दे रहा है जो कंपलीटली असेंबल्ड नहीं है।

इस दुकान पे बहोत सारे जार रखें जिनमें चॉकलेट भरी हुई है और ऊपर सीलिंग से बहोत सारे स्नैक्स के पैकेट लटक रहे है।

अ एक ए_सी लगा हुआ है जिसके बाजू में आर्टिफिशियल ग्रीनरी लगी हुई है वॉल्स पे टाइल्स लगे हुए हैं।

फोटो एक खास फूड रेस्टोरेंट की है जो कि प्योर वेजीटेरियन खाना सर्व करते हैं।

टिशू पेपर हैं एक इंसान का हाथ भी दिखाई दे रहा है जो एक गोल्ड अंगूठी पहने हैं।

और बहोत सारी चेयर्स रखी हुई है ऐसा लग रहा है कि कुछ प्रोग्राम चल रहा है।

और इसके ऊपर बहोत सारे छोटे छोटे फ्लैग्स टंगे हुए है जिनपे मून और स्टार बना हुआ--

अ होटल के पीछे कुछ पेड़ दिख रहे है होटल के सामने एक टीन का पतरा लगा हुआ है।

जैसे के कुछ डंबल्स हैं वेट लिफ्टिंग मशीनस है बेंच प्रेसेज है।

इस फोटो में हमें बहोत सारे मैटेलिक इक्विपमेंट्स और पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं इसमें कुछ प्लास्टिक के पाइप्स भी हैं।

यह ऑडियंस इसको देख रही है अ इवेंट काफी अच्छे तरीके से डेकोरेटेड है जिसमें कलरफुल क्लॉथ से टेंट बनाया गया है।

और पिलर्स बनाए गए हैं लेफ्ट साइड में हमें कुछ लड़के दिखाई दे रहे हैं और स्पीकर दिखाई दे रहे हैं।

राइट साइड ऊपर हमें प्लास्टिक के पॉलिथीन में वाइट रसगुल्ले रखे दिखाई दे रहे हैं।

उसके नीचे स्वीट्स रखी हैं जो की टेन जार के अंदर हैं।

ये फोटो कृष्ण नाम की एक होटल का है जिसमें काठियावाड़ी पंजाबी और चाइनीस खाना सर्वे किया जाता है।

फोटो हमें एक ब लड़का दिखाई दे रहा है जो मोटरसाइकिल चला के जा रहा है।

ये बिल्डिंग के सामने एक दीवाल है जिसके आगे बहोत सारी टू व्हीलर्स रुकी हुईं हैं और--

वॉल के पीछे बहोत सारी हरियाली है और राइट साइड पे एक बहोत बड़ा पेड़ है और लेफ्ट साइड पे एक बिल्डिंग है जिसमे ट्रायंगल शेप की छत है।

इसके दरवाजे कांच के हैं और उसपे प्योर वेज लिखा हुआ है दुकान के ऊपर बहोत सारी लाइट्स लगी हुई हैं और एंट्रेंस के लिए सीढ़ियां हैं।

पीछे दो लोग बैठे हुए हैं एक लेडी हैं और एक बच्चा है और ये कांक्रीट की वॉल है।

इस फोटो में हमे सनसेट दिखाई दे रहा है उसके आगे एक पाम ट्री है और ये फ़ोटो एक मस्जिद की है जिसमें लाउड स्पीकर भी लगा हुआ है।

के सामने एक टू व्हीलर खड़ी हुई है उसके सामने तीन चेयर्स रखी हुई हैं।

इसके ऊपर एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट जैसा दिखाई दे रहा है जिसपे मेटल की बार्स लगे हुए हैं विंडोज पे और दो पॉट्स रखे हुए हैं बालकनी में।

और हमें हल्की हल्की आजू बाजू की कुछ चेयर्स दिखाई दे रही हैं।

और हमें तीन मीटर्स रखे हुए दिखाई दे रहे हैं दो लोग चेयर्स पे बैठे हैं।

दीवाल के बाहर कुछ टू व्हीलर्स खड़ी हुई है और एक हैंड पंप है इस जगह के आप ऊपर बहोत सारी घास है और आजू बाजू हरियाली है।

इस पे बहोत सारी ग्रीनरी है और एक टॉवर भी है ब्रिज के ऊपर बहुत सारी लाइट्स लगी हुई हैं।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

जिसके बाहर हमें दो बॉल दिखाई दे रही है और बॉलो के पीछे भी एक बहोत बड़ा पत्थर है।

इस फोटो मे हमे साड़ी का एक शोरूम दिखाया जा रहा है जिसमें बहोत सारे स्टूल्स है।

के एंट में हमें ग्लास की एक वॉल दिखाई दे रही है और तीन मानिकेन्स हैं जिनके ऊपर साड़ी ड्रेब्द है।

ये फोटो एक दुकान की है जो कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचते हैं हमें --

और लेडिस साड़ी में है और जेंट्स शर्ट पहने हैं वर्टिकल स्ट्राइप्स के साथ --